बहुत सारी गोल्डन कलर की वाइट कलर की ग्रीन कलर की पिंक कलर की गौतम बुद्ध की मूर्तियां है इस पिक्चर्स में।

बाहर डम्मीस खड़ी हैं और एक अंकल भी खड़े है टोपा लगाए हुए।

ये विकसित बिहार के साथ निश्चय आर्थिक दल गांवों का बल दो अक्तूबर दो हजार सोलह से शुभारंभ का पोस्टर लगा हुआ है।

बोहोत सारी दुकाने हैं। नमक एजेंसी भी है।

यह एक जिम के अदर दर का फोटो है जहा पर बहोत सारी मशीनें रखी हुई है।